यह तस्वीर में एक बेड दिख रहा है बेड पे सफेद चादर बिछा है।

दीवार दिख रहा है दीवार हरा पीला रंग का दिख रहा है।

कुछ जिम का सामान दिख रहा है नीचे हरा घास दिख रहा है।

बिल्डिंग पीला दिख रहा है बहुत खिड़की दिख रहा है।

मिट्टी दिख रहा है कुछ सूर दिख रहा है।

नीचे जमीन दिख रहा है लाइट लटका दिख रहा है।

कुछ बोर्ड लगा है बोर्ड पे इंडिगो लिखा है।

नीचे बहुत दुकान दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहुत गाड़ी दिख रहा है।

लड़का नीला टी-शर्ट पहना है आसमान काला दिख रहा है आसमान में --

कुछ हरा पत्ता दिख रहा है पत्ता लीची का है।

एक टिफिन बॉक्स दिख रहा है कुछ कपड़ा रखा हुआ है।

सामने फिट प्लेनेट का बोर्ड लगा है।

यह नदी किनारे कुछ लोग हैं ऊपर दो पुल दिख रहा है।

सभी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग बैठ के खा रहे हैं।

कुछ लोग खड़े हैं कुछ औरतें खड़ी हैं।

इस तस्वीर में नदी दिख रहा है नदी बहुत बड़ा दिख रहा है।

सामने एक गाड़ी लगा दिख रहा है।

और पीछे बहुत मकान दिख रहा है आसमान में नीला है।

ऊपर करकट दिख रहा है पंखा चल रहा है।

इस तस्वीर में नदी दिख रहा है एक बड़ा पुल दिख रहा है।

एक टेबल फूल से सजा है एक ज्योति दीप लगा हुआ है।

सीढ़ी बना दिख रहा है नहीं--

एक आदमी साइकिल चला रहा है।

दीवार पे गुब्बारा दिख रहा है।

इस तस्वीर में नदी दिख रहा है।

कुछ गाड़ी दिख रहा है कुछ लड़के बैठे हुए है।

इस तस्वीर में एक इमारत दिख रहा है।

बड़ा पेड़ पौधा दिख रहा है।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

बहुत सारा गाड़ी दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहुत लोग दिख रहे हैं जिसमें कुछ बच्चे दिख रहे है।

दीवार सफेद लाल दिख रहा है ऊपर का छत सफेद--